छोटी छोटी झाड़ियां अच्छे आकार में कटी हुई हैं।

ये किसी घर की नींव हो रही है जिसमें दो से तीन गड्ढे बने हुए हैं।

पर्दे का रंग हल्का नीला और गहरा नीला लगा हुआ है।

वॉल पे फॉक्स के आगे भी कुछ लिखा हुआ है।

और इस तरफ मेन्यू बिल रखा हुआ है।

बीच में कुछ बना हुआ हैं जिसपे फूल सा दिखाई दे रहा है।

हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में शिव और पार्वती जी बने हुए हैं और शीशे के कांच के अंदर हैं।

उसके ऊपर एक घड़ा टंगा हुआ है जिससे पानी टपक रहा है।

इस तरफ एक छोटी सी शिवलिंग भी रखी हुई है।

और छत पे सीलिंग में लाइटें लगी हुई है।

फर्श कंक्रीट के पत्थरों से बनी हुई है।

ये किसी सैलून का दृश्य है जिसमें एक लड़की बैठी हुई है जिसने पर्पल कलर की टॉप और ब्लैक कलर की पैंट पहनी है।

टिनसेट है और नील ऑरेंज कलर की सरिए भी लगे हुए हैं।

सामने चार पिंक कलर की बोतल है और एक गिलास भी रखा हुआ है।

आसपास पेड़ हैं पेड़ के बॉर्डर सफेद और लाल रंग के हैं।

दोनों तरफ हरी हरी घास लगी हुई है और नीले रंग का टेंट दाई ओर से दिखाई दे रहा है।

ये फ्री हेल्थ कैंप का दृश्य है जो डॉक्टर एल एम वर्मा लिखा हुआ है बैनर पे--

दूर से ट्रैक्टर की ट्रॉली में दिखाई दे रही है।

हल्के हल्के पथरीली पहाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

की कोई दुकान लग रही है जहां बोर्ड पे लाल रंग का अमूल लिखा हुआ है।

तीन सफेद रंग के पॉट रखे हैं जिस पे हरे हरे घास लगी हुई है।

ऊपर लाइट का झालर लगा हुआ है।

एक ऑटो सामने दिखाई दे रहा है जिसका रंग येलो और ग्रीन है।

एक गड्ढे के अंदर है एक गड्ढे के बाहर है।

ये अमीरुद्दोला पब्लिक लाइब्रेरी का एंट्रेंस है जिस पे एक लड़का साइकिल पे बैठ के अंदर जा रहा है।

दूब हरे हरे घास दिखाई दे रहे हैं।

इसके सामने आ डम्मी है जिसने लाल रंग कि शल्ट पहनी हुई है।

पीछे कबर्ड में बहुत सारे कपड़े पन्नी के अन्दर रखे हुए हैं।

नीचे चार्ट पेपर रोल किये हुए रखें हुए हैं।

सामने की ओर सनसेट हो रहा है और हरी हरी घास है।

इंडियन पोस्ट का ऑफिस है जो प्रधान डाकघर लखनऊ का है।

ये किसी म्यूजिक स्कूल का दृश्य है जिसके सामने--

आदमी तबला बजा रहा है और इस तरफ एक आदमी पियानो बजा रहा है।